एक बुक भी दिखाई दे रहा है यहां पर एक एक डब्बा भी दिखाई दे रहा है।

ये बैटरी दिखाई दे रहा है।

घड़ी का हैंडिल घुमा रहा है वहां पर रसरी लटकाया हुआ--

अह ये छह दिवारी है उस पर

यहां पर एक किचन बन रहा है उसमें टाइल्स लग रहा है का डिजाइन है खिड़की भी है।

वह खंभा के ऊपर तार है।

फूल से डिजाइन बना हुआ है अह वहां पर एक मूर्ति है।

यहां पर एक कपड़ा का दोकान है बाहर में टी शर्ट रखा है।